और ये देखिएगा अलमारी में काफी सारा समान रखा हुआ है जो की काफी बड़ा हॉल है।

और यहां साइड में देखिए एक बड़ा सा टेबल है उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और पास में देखिएगा दो टेबल्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे कुछ स्टैचू भी दिखाई दे रहे हैं साइड में देखिएगा जोकि कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है और एक ई रिक्शा दिखाई दे रही है।

और अंदर की तरफ देखिएगा काफी सारी टॉयज की दुकानें हैं काफी सारी टॉयज दिखाई दे रहे हैं जैसे कार हैं ट्रैक्टर हैं।

स्टार्ट और यहां पर देखिएगा काफी सारा समान भी दिख रहा है।

और पानी की टंकियां भी तीन पानी की टंकियां दिखाई दे रही है काले करल कलर की है।

यहा पे देखियेगा दो तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे है व्यक्ति ने रेड कलर का--

और सामने की तरफ बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही हैं काफी बड़ी बिल्डिंग है ये।